यहां पर एक दुकान दिखाई दे रहा है। ये दुकान के ऊपर बोर्ड लग रहा है। जो की ना बैगनी रंग का है। इसमें सफेद रंग का कुछ लिखा हुआ है। नीचे का दिखाई दे रहा है। जहां पर एक काउंटर है। काउंटर के--